ये एक फर्नीचर की शॉ लोहे की फर्नीचर की--

जो लोहे की कुछ टेबल बनाते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर ऊपर लाइटें भी बहुत सारी दिख रही हैं लगी हुई--

कोने पर काउंटर पर बैठा हुआ एक आदमी दिख रहा है।

बाहर खटिया पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है एक चेयर भी लगी हुई--

और एक चेयर लगी हुई है और दो चेयर लगी हुई है जिसपे दो आदमी बैठे हुए हैं।

और ये एयरटेल फोर जी का यहां पर नेटवर्क का बैनर लगा हुआ है और कुछ आदमी है जो बाहर खड़े हुए हैं।

और नीचे की ओर एक टंकी दिख रहीं हैं।

पीछे एक टैक्टर ट्रक खड़ा हुआ है छोटा।

और पीछे कार भी खड़ी हुई है यहां पर।

और यहां कुछ पेट्रोल है जो लोग भरवा रहे हैं और पीछे एक बस दिख रही--

जो जुड़वा फिश है ये एक ठेले पर लेकर इसको कहीं जा रहे हैं।

और यहां प्लेट वगैरा जमी हुई है खाने की--

ये एक सामने मां शारदा फैमिली रेस्टोरेंट की इमेज है।

और यहां पर कुछ घना जंगल टाइप पहाड़--

ये एक टायलेट और बा बेसिन है बेचने वाली की दुकान दिख रही है।

ये एक ब्रिज की इमेज है नीचे से ब्रिज के नीचे से नदी बह रही है।

और एक बोर्ड भी लगा हुआ है यहां पर।

ऊपर यहां पर बाथरूम में लगाने वाले पाइप लगे रखे हुए हैं स्थान पर।

यहां पर अलमारी बनी हुई है रेक्स और इसमें कुछ सामना रखा हुआ है।

और यहां पर कुछ पाइप लाइंस के पाइप दिख रहे हैं टंगे हुए।

और यहां पर कुछ झाड़ू वगैरह भी बिकती है तो वो भी रखी हुई दिख रही है।

जिसमें जो एक फ्लोवर पकड़ा हुआ दिख रहा हैं और--

कुछ बॉटले रखी है पानी की और बीच में गोल चेयर रखी है खाना खाने की--

ऊपर एक ए_सी लगा हुआ है और कांच का यहां पर विंडो भी लगा हुआ है और यहां पर--

और बहोत सारी बुक्स और अखबार वगैरह और--

यहाँ पर कलेंडर भी टंगे हुए दिख रहे हैं यहाँ एक अ एक शा शॉप कीपर खड़ा हुआ है।

और कुछ बिल्डिंग के अंदर खड़े हुए दिख रहे हैं।

सामने एक पेंटिंग सीनरी बनी हुई है।

और कुछ सामन अलमारीयों में जमा हुआ है।

और यहां पर आस पास काफी छोटे छोटे झाड़ उगे हुए--

और सामने भी खूब सारा पानी दिख रहा है यहां पर।

और कुछ येलो और व्हाइट बैलून से सजा हुआ है।